हेलो गाइस आप देख सकते हैं यहां पे बहुत बड़ा जंगल टाइप का लग रहा है और यहां --

हेल्लो गाइस देख सकते है ये जग है जहा पर बोहोत सारे पोधे पेड़ असे कुछ मिलते है पेड़ पोधे और --

ग्रे टाइप का है और यहां पे देख सकते हैं लोहे वाले--

आप देख सकते हैं यहाँ पे सजावट हो रखी है।

बगल मे खाने पीने का सामान है जहां का --

कलर नहीं किए हुए हैं ईंट से लगे हुए हैं जिस ईंट का कलर रेड है।

हेल्लो गाइस देक सकते हे यहा पे इटो से घर बनाए गये हैं।

हेलो गाइस आप देख सकते है ये कितनी अच्छे से सजावट की गयी हैं।

ये सब पता नहीं क्या चीज से बने हुए है व्हाइट कलर के ब्लैक कलर के--

यहाँ बहुत सारे हरे हरे भरे--

कार्यना स्टोर है स्टोर का नाम और ये बोर्ड का कलर तीन दो कलर मे है ब्लैक हैं व्हाइट --

शरीर के एक्सर्साइज़ करते है और ये सब अच्छे बहुत अच्छे होते है।

आइए और खाइए यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

इस घास पत्ती का कलर ग्रीन है और पानी का कलर व्हाइट है।

हेलो गाइज आप देख सकते है ये एक बहुत से बहुत बड़ा--